ये मूर्ति कितनी बढ़िया तरीके से बनाई है।

इनका फोटो कितना अच्छा आया है और ये लगता है कोई पिकनिक वगैरह प गए हैं कोई दर्शन वर्शन करने।

ये एक चर्च है ये चर्च बहुत बढ़िया चर्च है इस चर्च में प्रार्थना वगैरह करते हैं यहाँ काफी सारे लोग आए हैं।

ये लड़का कितना अच्छा लग रहा है इसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है। हार्ड बना हुआ है रेड कलर का बैलूनों से।

बहुत अच्छी लगती है यार भिंडी और टमाटर की चटनी।

और ये कितने सारे हिरण है कितने अच्छे और कितने सुंदर मस्त लग रहे हैं।

शर्मा साउंड का बहुत अच्छा साउंड है। इसके स्पीकर के साउंड बहुत अच्छे और क्वालिटी के हैं साउंड बहुत बढ़िया है।

यह एक प्रोग्राम हो रहा है यह लगता है कोई वेडिंग वगैरह है।

यह हमें खाना चाहिए। यह हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया है।

और ये काफी अच्छे-अच्छे कलर के कोर्ट हैं ये नीला भी अच्छा लग रहा है और ये येलो भी अच्छा लग रहा है।